और यहां पर पेड़ पौधों की डेकोरेशन लड़ी से की गई है जोकि येलो कलर की है।

ये दुकान के अंदर एयरटेल सिम वाला चिन्ह नजर आ रहा है।

यहां पर बर्तन भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर गोल वाली लाइटों का प्रयोग किया गया है।

इसके अंदर हमें बाइके नजर आ रही है और यहां पर हमें सीढ़ियां भी दिख रही है।

जिसमें की अंडरवियर अंदर जींस अंडरवियर दिखाई दे रहे हैं।

कोई व्हाइट ग्रीन कलर की है तो कोई येलो में है।

ये पता नहीं जो सरगम होती है वे और वे यहां पर बहुतसो का चेहरा ब्लर कर दिया गया है।

यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक छोटी लड़की व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

यहां पर कुछ लिरिक्स लिखी है फ्री फ्री रूबल हेल्थ कैंप ।

इसके पास मे सूखा फूका घास नजर आ रहा--

यहां पर हमे दिखाई दे रहा है कि यह किसी स्कूल बस स्कूल के बाहर का नजारा है।

ये लकड़ी हमने दिखाई दे रही है जैसे कि चंदन की हो।

साथ में हमें उसके शीशे में सामने का भी दिखाई दे रहा है।